यह एक पार्क है इस पार्क में दो बच्चे बैठे हैं।

टी शर्ट पहनी हैं और लोअर डाल रखा है और वह अप ऐसा पोज दे रहा है जैसे कि वो अपनी फोटो खिंचवा रहा है।

यह एक तरीके का जंगल दिखाई दे रहा है जिसमें एक लकड़ी का गट्टा टूटा हुआ है।

अब ढेर सारे घनी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं इन पेड़ों के साथ वह इन जैसा लग रहा है।

यह एक पार्किंग स्थल है यहां पर दो बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी है।

ट्रक में कुछ आदमी लोग सामान को उठा उठा कर रख रहे हैं जो कि बोरियां हैं।

इसका गेट सफेद कलर का है और सब गेट के सामने एक--

खम्बा है उस पे श्री बालाजी डेंटल क्लीनिक लिखा है और डॉक्टर का नाम भी लिखा हुआ है।

पेड़ बन लगे हुए हैं सामने जन सेवा संस्था की एक वैन भी खड़ी हुई है और इस वैन के--

का बोर्ड लगा हुआ है जो कि भूरे कलर का है और इसमें जो घर है इस घर की --

बात ये है कि यह पिंक कलर का और लाल कलर का दिख रहा है।

यह एक पार्क है इस पार्क में हरी हरी घासें हैं।

और एक पिछे का चित्र भी बना है जोकि लाल कलर के बोर्ड पर है।

अब सामने ऐ_सी लगी हुई है और बहुत ही वी_आई_पी दिख रहा है ये।

इसमें लेडीज अपना आके अपनी पार्टीस करती हैं।

जैसे कि आपको बता दें चुन्नी ब्रश और हिटर रखा है और बहुत सारे प्रोडक्ट है।

साथ में प्लास्टिक की बोटले पानी वाली हैं ऊपर जग भी रखा हुआ है।

साथ ही साथ नीचे बहोत सारी किताबे और रजिस्टर पड़े हुए हैं और वो उनको कहीं बेचने के लिए दुकान में रखता है और--

सारा सामान उपलब्ध है जो आपके खाने पीने की व्यवस्था र--

बगल में डॉक्टर सुधीर कुमार जी का मेडिकल स्टोर है इधर बगल में हरीश भाई चश्मे वाले की दुकान है।

यह भारतीय डाकखाना है इस डाकखाने के सामने से एक--

और आप को दिख रहा है चार पांच लोग फूल की दुकान लगाए हुए हैं।

सामनेवाल कुछ मूर्तियां हैं इन मूर्तियों में--